ये दीवाल से लगी हुई अलमारियां सजी हुई--

है यहां से सामने गेट बना हुआ हैं गुलाबी रंग का।

चोकोर बना हुआ स दिवाल है सफेद रंग से पोती हुई--

जो बंद है दरवाजे से आसपास दो लोग एक चबूतरे में बैठे हुए हैं।

काफी लोगों की भीड़ है जो शायद प्रदर्शनी--

सवार एक आदमी जो हाथी को चलता वो दिख रहा है मिट मिट्टी की जमीन दिख रही है।